एक जगह सब जन दिखाई दे रहा है बहोतसा आदमी हैं वहां में एक दिखाई दे रहा है --

वहां मेरे को लाल कलर का कुर्ता दिखाई दे रहा पोस्टर दिखाई दे रहा मेरे को--

वहां मेरे को हर घर दिखाई दे रहा है मेरे को वहां पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और ग्रीन दिखाई दे रही है मेरेको लंबी लंबी ग्रीन लगी दिखाई दे रही है।

मोमोज दिखाई दे रहा है मेरे को हल्की खाने की चीजे चम्मच--

मुझे पंचर की दुकान दिखाई दे रहा है पंचर के मेरे को कुल्फी दिखाई दे रहा है वहाँ मेरे को समान दिखाई दे रहा है बाल्टी रखने गई ट्यूब रखा है --

दिखाई दे रहा है गाड़ी दिखाई दे रहा है।

और मेरे को वहां हम सामने दिखाई दे रहा है --